येलो कलर का घर है रेड कलर का छपा हुआ हैं ऊपर में।

हरा कलर का घास है और साइड मे एक लड़की है नीचे जमीन है।

ये सोनी हायर हैं। इसमें फ्रिज गोदरेज कूलर ए_सी हीरो जैसा सब सामान मिलता है।

साइड में भी बहुत सारे सजावट किए गए हैं ऊपर में यलो कलर का स्टेज जैसा है घर है पीछे तरफ।

और झोपड़ी का होटल है आगे तरफ।

गाय तीन गाय खड़ा है।

दिवाल है झूमर लटका है लाइट पंखा हैं।

दो कलर का शटर लगा हुआ है।

एक साइड अंधेरा दिख रहा है।

साइड में भी फूल गाछ है।

जैसा दुकान है साइड मे एक झोपड़ीपट्टी है।

यह एक जिम सेंटर है।

फुल सजावट बहुत अच्छा है।

चित्र में आदमी का एक टी_वी लगाएं है लाइट जलाए हैं।

रंग बिरंग का पर्दा रखा हुआ टंगा हुआ है स्टील का रड में--

साड़ी हैं अ टी_वी जैसा दिख रहा है।

का यहां पे लाइट कैमरा लगा हुआ है।

यह ट्रॉफी जैसा दिख रहा है और ट्रॉफी है।

साइड में माटी के पीछे थोड़ा सा पत्थर का दीवार बना हुआ है।

गाड़ी को चलने में दिक्कत हो रहा है।

सब कोई पूजा करने आते होंगे ये इधर में।

साइड साइड में उधर बहोत पेड़ ओड़ है पहाड़ जैसा दिख रहा है छोटा मोटा --

जो मशीन चाहिए इधर गेट ओट रहा है गेट ।

बहुत सारे बच्चे खेल रहे है। ईटा रखा है।

बालू माटी रखा हुआ है।